और जिसको हमलोग झींगा माछ झेंगा मछ --

घर का कमरा भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे इस घर के किनारे मे भी एक बाइक से लोग जा रहा है ।

खड़ा है यहाँ दो टीचर भी --

बहुत अच्छा स्कूल बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है | इस स्कूल के टीचर लोग भी बहुत अच्छे --

बहुत अच्छे से पढ़ाते है समझाते है और बात-विचार करते है जिस स्कूल के सामने --

इस मैदान के किनारे उं पेड़-पौधा भी नजर आ रहा है बहुत सारे आदमी भी --

इस घर का कमरा भी बहोत अच्छा --

लग रहा है इस घर के आगे जो शेटर लगा हुआ है वह भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

कमरा भी नजर आ रहा है इस कमरा भी देखने में बहुत ही --

मार्केट जाते हैं कोई भी काम अगर हम लोग को लगता है तो इसी टोटो से जाते हैं और इमरजेंसी में यह टोटो बहुत ही काम देता है यह टोटो --

बैटरी से चलता है टोटो ये आदमी बहुत अच्छे से बात विचार करते है टोटो के सामने बहुत ही बड़ा --

एक नाव भी है जो नाव पर कोई आदमी --

बहोत ही हरा-भरा लग रहा।

यहाँ हम लोग जब जब हम लोग का तबीयत खराब होता है तो इसी हॉस्पिटल में दिखवाने के लिए आते हैं इस हॉस्पिटल से हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी।

बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से बात विचार करते हैं बहुत अच्छे से दवाई भी देते हैं ।

कोई चीज का फसल लगा है जो देखने में बहोत ही हरा --

यह एक मैदान है और मैदान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत ही प्यारा पौधा है जो बहुत ही हरा भरा बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में|

ट्रेन पार होता है इसके बगल में एक बहुत ही बड़ा --

एक्सरसाइज करने के लिए आता है और एक्सरसाइज करके बहुत फिट रहता है।

यह बैंक यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत ही सु --

यह नदी है नदी में बहुत बड़ा पुल है और इस नदी के किनारे --

इसमें मैच खेल कर बहोत अच्छा लगता है और बाहर सब कोई --

किताब कॉपी हम लोगों को पढ़ने लिखने में काम देता है और यहां --

ब्लैक और व्हाइट है और ये इसका दो बच्चा भी है ।

हमलोग को बहोत ही अच्छा लगता है।